सारे रास्ते पे लाइट जल रही है और यहां पे सीरीओ से लॉस है।

और सामने एक काफी सुंदर दृश्य दिख रहा है जो आसमान में डूबते हुए सूरज के शाम का है।

यहां पे हमें कुछ फल की दुकान दिखाई दे रही है और यहां पे कुछ फल भी रखे हुए है।

सामने हमें एक बहुत अच्छा घास का रास्ता दिख रहा है जिसके साइड से पत्थर को सफेद रंग करके बनाया गया है।

ये एक पीले कलर का फूल है।

सामने एक लड़का खड़ा है जो जिम करके अपने शरीर का सिक्स पैक सबको दिखा रहा है।

वहां पीछे एक बोतल भी रखी हुई है उसके आगे एक आईना लगा हुआ है।

इस तस्वीर में बहोत सारी गाड़ियां स्कूटी बिल्डिंग सब दिख रहे हैं।

वहां दाहिने साइड पर एक ए_सी भी लगा हुआ है।

यहां सामने एक टीचर भी है जो पढ़ा रहे हैं काफी सारे बच्चे यहां पे पढ़ रहे हैं।

यह एक जंगल का दृश्य है जो जंगल के बीच में एक सुखी हुई नदी है।

यहां पर दो लोग दिख रहें हैं यहां पर कुछ टेबल कुर्सियां भी लगी हुई है।

इस तस्वीर में हमें एक टोल प्लाजा दिख रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक दुकान दिख रहा है जो इलेक्ट्रिक गुड्स का है।

जो शेल्फ बना हुआ है शेल्फ के ऊपर कुछ बॉक्स वगैरा रखी हुई है कुछ कार्टून के बॉक्स भी हमें बाईं तरफ दिख रही है।

इस तस्वीर में हमें एक दुकान दिख रहा है जिसका नाम है फ्रेंड्स क्रिएशन ।

इस तस्वीर में हमें एक आदमी दिख रहा है जो एक दुकान पे बैठा हुआ है।

एक रेफ्रिजरेटर यानी की फ्रिज भी दिख रहा है।